प्लेस का है घूमने के लिए यहाँ लोग हाय-हाय घूमने के लिए सैर करने के लिए --

यहाँ पर में मुर्गी पालन होता है।

म्यूजिकल समान यहाँ रखा हुआ है।

स्टेट बँक ए.टी.एम. कार्ड है।

न्यू ताज हेयर सलून यहाँ पे बाल का कटिंग किया जाता है।

एक निर्तकी नाच कर रही है कला मंच का प्रोग्राम है ।